और बाहर एक गेट लगा हुआ हैउसके हर एक थैला हैआइसक्रीम का जो एक लड़की और लड़के खड़े है।

एक लाइब्रेरी रूम है विवेकानंद। जिस विवेकानंद में अलमारी--

अगल-बगल पेड़ हरे पेड़ पौधे भी हैं और घास भी जमा है।

वाहार ए-एक स्टेचू बना हुआ है और गाड़ियां खड़ी हुई है कुर्सियां रखी हैं। और हर अगल-बगल हरे पेड़ पौ--

और दीवालों मेंखिड़-कियां हैं पोस्टर लगी हैं।

एक होटल है जिस होटल के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और हरे पेड़ पौधे हैं और एक साइकिल खड़ी है और कुछ गमले एक गमले-गमले रखे हैं।

ति बड़ा सा तालाब बना हुआ है जिस तालाब में पानी भरा हुआ है और सामने पाहाड़ दिख रहा है।

और नाव रखा हुआ है और कुछ इ ब-बहुत सारे गमले फूलों के गमले रखे हुए हैं पौधे हैं अगल-बगल हरे पेड़--